यहाँ एक एयरपोर्ट हैजहां पर सामने एक ये एयरोप्लेन खड़ा हुआ है।

ये गार्डन कि तस्वीर हैजहां पर ये झूला लगा हुआ है।

यहाँ एक नदी कि तस्वीर है जिसमें नाव खड़ी हुई है नाव पर --

खड़ी हुई है एक बाइक का काॅंच दिखाई दे रहा है।

पर्सन खड़े हुए हैजिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी है।

इसको रे पिंक और व्हाइट कलर के बलून के द्वारा सजाया गया है।

पाँच दस बोतल रखी हुई हैयहाँ एक--

पैरट करो कि तस्वीर लगी हैपीछे कि और भी तस्वीर लगी हैदो--

और दो ऑटो जाते दिखाई दे रहे है।